मुझे यहाँ पर एक दो कपल नज़र आ रहे हैं और कुछ लड़कियाँ भी घूम रही हैं उनके आस पास और यहाँ बिजली का भी काफी अनुभव हो रहा है आई शेड से ऊपर अनार भी निकल रहे है।

कोईला वाईल कोयला भी नजर आ रहा है कुछ-कुछ और मुझे इसी के साथ में साइड में दो तीन वर्कर पसीना पोछते नजर--

यहां पर साइंस एग्जीबिशन जैसा लग रहा है कुछ बच्चे अपने बेंच के ऊपर कुछ कागज की चीज बनाकर रख रहे हैं उनके पास में कुछ और बच्चे भी हैं।

मुझे का मुझे काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं लोगों के पास में रेड कि चेयर के ऊपर काफी ज्यादा लोग भी बैठे हुए हैं।

जो माम उनको अपना प्रोजेक्ट दिखा रही हैं और पीछे की तरफ व्हाइट कलर के दिवाल के ऊपर लाल काले कलर का कपड़ा भी चढ़ना हुआ है कुछ बैलून भी लगे हुए हैं दिवाली के--

यहाँ पे एक कॉन्सर्ट नजर आ रहा है होता हुआ तीन चार जनों ने स्टेज के ऊपर गिटार पकड़ रखा है और कुछ जन कुछ लोगों सामने से देख रहे हैं और एक कैमरा भी ऑन हो रखा है उनकी तरफ।

मुझे सामने की तरफ शेरावाली माता भोलेनाथ और गणेश भगवान नजर आ रहे हैं और भक्त उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं आरती का नजारा भी देखने को मिल रहा है कुछ बच्चे आपस में--

और इसी के साथ मुझे पीपल के पत्ते भी नजर आ रहे हैं एक गमला भी नजर आ रहा है पॉलिथीन भी नजर आ रही है और थोड़ा सा बच्चे अपने काम कर रहे हैं।

और सभी से लाइन से छोटे छोटे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। उनके ऊपर की तरफ जाली भी नजर आ रही है।

और एक बच्चा सामने की तरफ से वाइट कलर के कपड़े पे पहना हुआ है और कागज से कुछ बेंचो के बीच में कर रहा है और एक बच्चा खड़ा हुआ है बाकी के बच्चे बैठे हुए हैं |